पर एक घोडा खड़ा हुआ है जो सफ़ेद रंग की एक आदमी पकड़ा हुआ है।

बगल में एक पेड़ लगा हुआ है जो हरी पत्तिया है एक बाइक खड़ी है।

ऑटो खड़ी हुई है पिले रंग की बगल में पेड़ है भूरे रंग का है।

बड़ा सा बिल्डिंग है| तो जो नीली रंग की कांच लगी बगल में एक बिल्डिंग है |सफ़ेद रंग की एक डिवाइडर बना हुआ जो लाल और उस काले रंग पिले काले रंग की फूल लगाए गए है| लाल रंग की बहोत सारे गाड़िया री है।

इस साइड पे दुकाने है जो बहोत सारी दुकाने हैं एक ए_टी_एम मशीन है जो ए_टी_एम के बहार सीढ़ी बनी हुई है और दो लड़के बैठे हुए हैं बगल में गाड़ी खड़ी है जो नीले रंगकी और काले रंग की हुए शफेद रंग की गाडी हैं।

और दुकाने खुली हुई हैं ऊपर पोस्टर लगाया गया हैं। पोस्टर में लाइटे जल र--

हरी पत्तिया है गोरे रंग की दीवाल है | और पेड़ लगे जो हरे पत्तिया है।

एक कार जो जो सफ़ेद रंग की है लेहेरे उठ रही है काफी तेज़ी से।

ओ है जो पिले रंग की ऊपर छत है काले रंग का एक लड़की खड़ी जो सफ़ेद रंग के कपड़े उ काले रंग के पैंट पहनी हुई है पीछे साइक पे परदे लगे हुए है जो नीले रंग के है खम्भे खड़ी हुई है।

मिट्टी है कुछ लोग खड़े हुए है जो एक घोड़े में आदमी जा रहा है वो सफ़ेद रंग का घोडा है।

बगल में टेम्पो पिले रंग की है। एक दुकान है बहुत सारे पैकेट है बगल में खम्भा लगा जिसके ऊपर तार गयी हुई है काले रंग की सफ़ेद रंग का --